व्हाइट कलर में लाइट भी लगी हुई है और जिम में बहुत सारे मिरर भी लगे हुई है और जिम में एक टायर भी डला हुआ है टायर का ब्लैक एंड येल्लो कलर से पेंट --

इस पिक्चर में एक गेरेज दिख रहा है और गेरेज में एक रेड कलर की कार खड़ी हुई है| कार अंदर खड़ी हुई है गैरेज की मशीन पर ही गे कार खड़ी हुई है।

और बहुत बड़े-बड़े ट्री भी है और ट्री पर बहुत सारी ग्रीन ग्रीन लीव्स भी लगी हुई है और एक दूर माउंटेन भी दिखाई दे रहा है और माउंटेन पर भी पेड़ लगे हुए --

इस पिक्चर में एक वंडरफुल कार दिखाई दे रही है जिसका कलर ब्लैक है और वह कार का सामने का पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में एक खेल का बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड दिख रहा है और नाईट का टाइम है तो उसमें बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं जहाँ एक व्यक्ति बस बीच में खड़े हैं और नीचे बहुत सारी हरी दूबा है।

रेलिंग भी दिख रही है और चौक से स्टिक भी लगे हुए हैं।

पिक्चर मे बहोत बड़ा मै मैदान दिखाई दे रहा है मैदान के चारो ओर बहोत सारे पेड़ लगे हुए है मैदान मे हरी घास है और मैदान मे कुछ रोड की लाइने भी बनी हुई है मैदान मे लाइटिग भी लगी हुई है।

और कुछ माला येलो कलर के फ्लावर से भी बनी हुई हैं जहाँ माला टंगी हैं उधर वाइट कलर का पेंट से पुता हुआ हैं और अंदर भी बहुत सी माला दिखाई दे रही हैं।